दुकान बा बहुत से आदमी बा।

घर बा दुकान बा घास बा पेड़ बा बहुत सुन्दर बा हरा हरा बा पूल बा गाड़ी बा बहुत आदमी बा लाल पेंट बा बहुत सुन्दर लागा ता बादल बा झंडा बा।